यहाँ आदमी है और एक बहुत बढ़िया बेस्ट लौक रहा है ये रो --

और दोएक दो सिंगर भी है यहाँ पे उपलब्ध और बहुत अच्छा रिलेसन --

देख बगल में एसीए कलर सब का स --

रेड कलर का है। और बहुत अच्छा शानदार लोकने के लिये अच्छा है बेस्ट दो लाइट भी है देखने का नजारा नहीं देखने का पांच-छे पंखा भी है और --

यहाँ पे कपड़ा दुकान है। बोहोत ही बढ़िया नजारा है और कोई हीरो का लाइट भी लगा हुआ है।